ये एक क्लिनिक है। यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं।

इलाज कराने के लिए आते हैं डॉक्टर इन सब को देखते है अच्छे से और --